एक छ के छोटा सा गमला है और गमले में कुछ रखा हुआ और गमले में एक न्यूजपेपर भी रखा हुआ है और अगर बहोत ही अच्छा है सुंदर है।

और यहाँ बाउंडरी में छोटे छोटे गेट्स भी लगे हुए है ब होत सारे --

जो भी हो इस दुकान का कलर वाइट हैं।

इस चित्रों में हमको एक दुकान दर्शाया गया जो की इस दुकान से--

उस दिवार पे इत्ती कोन दि-दि-दिवार बना हुआ हैं।

इस चित्र में एक बड़ा सा व मशीन दर्शाया गया है जो की मशीन के ऊपर--

ऊपर से बिच ब्रिज लगा हुआ हे पिलर के बगल में--

और यहाँ सफेद रंग का टाइल्स लगा हुआ है।

क्योकि सी_सी_टी_वी आप सामने देख ही सकते हे टी_वी में--

और काफी मात्रा में आज भीड़ इकठा हुआ हैं और आदमी भी इधर--

कोई आदमी घूम रहा कोई आदमी बैठा है कोई आदमी बातचीत कर रहा है कोई आदमी फोन पर --

काफी ज्यादा काम चल रहा है और पूजा भी हुआ है।

इस चित्र में आपको एक ब्रिज दर्शाया गया है और--

ब्रिज में ट्रेन जोकि आती जाती रहती है।

और बिल्डिंग अम ईंटें पत्थर से बनाया गया है एक जहाज है।

और यहां पे लोहे का कुछ बनाया गया बिल्डिंग के बाहर--

एक नदी है और इस नदी के चारो तरफ--

कुछ समांस रखे गए हैं और चम्मच वगैरा रखे हैं।

ठिठ का बनाया गया है छोटा मोटा मकान--

उधर गिट्टी उधर गिट्टी पत्थर गिराया गया है और यहाँ पे कूलर है बाइक है खटिया है।